ये एक्सिस बैंग है पोस्ट ऑफिस बैंक है यहां पे बंदे बैठे हुए हैं।

व्हाइट कलर से लिखा हुआ है रेड पेंट कर रखी है ऊपर जाने के लिए जीना है एक शटर लगा रखा है उसमें ताला लटक रहा है।

ये किराने की दुकान है यहां पे मैगी रखी हुई हैं अगरबत्ती रखी है।

कुछ पैकेट्स पैक करके रखे हुए हैं बगल में तराजू रखा हुआ है टेबल के ऊपर--

मार्केट है कुछ खरीद सकते हैं और झूलों पे झूल सकते हैं बच्चों यहां पे खूब मजा करते हैं मौज लेने आते हैं बच्चे--

ये स्टार रेफ्रिजरेशन की दुकान है यहां पे एक ए_सी लगा हुआ है।

ग्रीन येलो और रेड कलर से पेंट कर रखा है।

टेबल बना रखा है बैठने के लिए पेड़ों पर पेंट कर रखी है व्हाइट एंड ग्रीन कलर की।

और यहां पे होता है अन्दर व्हाइट कलर की दीवार है मीटर लगा हुआ है।

और कुछ आगे की तरफ जा रहे है उसके पीछे ग्रीन एंड यलो कलर की बस खड़ी है।

बहोत बढ़िया बढ़िया डिजाइन के कपड़े हैं बन्दे यहां पे बैठने आते हैं।

एक जिम है यहां पे बंदा जिम करके अपने सिक्स एब्स दिखा रहा है।

और ये फोटो क्लिक करवा री है घास है कही घास नई है कही है।